इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी सजावट दिखाई दे रही है।

यहाँ मुझे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे फल दिखाई दे रहे हैं।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

यहां मुझे एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे कुछ खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक बैट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक रिक्शा दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे छेतेनी बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

यहां मुझे कुछ टावर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे ट्रक दिखाई दे रहे हैं।